एगो घर ह द्वार हगाय बियागाय डाल के खा तिया ओकर लाल रंग के गाला में पटा बांधल बा ओकर पगहा बा।

ए गो आदमी हा आदमी आ आदमी आ ट्रेक्टर हा एगो पेड़ बा ट्रेक्टर पे पेड़ नीचे जमीन बा।

एगो घर बा एगो द्वार बा पीछे आदमी बा साइड-साइड में एगो पार्क होवे चौकी लागल बा उपरा एगो आदमी बैठल बा।

दुकान भैया कापी किताब के कॉलम के खूब ढेर कॉलम रखल बा और लाइट लागल ब। खूब ढेर कॉलम रखल बा दुकनिया मे --